इस तस्वीर में माल गाड़ी के डिब्बे दिख रहे है और यहाँ पर एक टावर भी नज़र आ रहा है।

फाइल नजर आ रही है पानी की बोतल है सेनेटाइज़र की एक बोतल दिख रही है यहाँ पर दो लेडीज खड़ी है।

इस तस्वीर में अ एक एक बगीचा नज़र आ रहा है इस बगीचे में बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा कार्यालय दिख रहा है कार्यालय में एक कंप्यूटर दिख रहा है कुछ फाइले भी नज़र आ रही है कुछ--

इस तस्वीर में एक पिले कलर की बड़ी घसरण पट्टी दिख रही है यहाँ पर कुछ लोग भी नज़र आ रहे है यहाँ पर--

इस तस्वीर में फूलो की दुकान दिख रही है यहाँ पर रंग-बिरगे फूले फूलों की मालाये टंगी हुई दिख रही है।

यहाँ पर रोशनाई की हुई है दुकानों में--

बस के पास एक टु विलर दिख रही है और कुछ लोग खड़े है एक व्यक्ति के पास एक बैग दिख रही है यहाँ पर हरे-भरे बड़े--

बिल्डिंग के बाजु में और एक बिल्डिंग नजर आ रही है उसके बाजु में एक पेड़ भी दिख रहा है।

यह तस्वीर एक स्कूल की दिख रही है एक चेंनल गेट दिख रह है चेंनल गेट के पास कुछ लड़कियां --

और साफ़ दिखाई दे रहा है अँधेरा भी छाया हुआ है |